पेम दोनों जा सकते हैं और ये सी सी रोड में है जो कि देवरिया में --

बगल बजरंग बली का झंडा लगाया गया है जो कि एक अच्छा प्रतीत होता है।

और यहाँ पे जाना बहुत ही अच्छी बात है और यहाँ पे जाकर जो --

देवरिया स्टेडियम का है और यहाँ पे आपको कम फी में आपको सिखाया जा --

बेसिकली ये किसी टेम्पल का है जहां पे पूरे गॉड पूरे ऊपर से नीचे तक गोड्स म्मम --

और यहाँ पे जो फोटो में या जा रहा है बहुत ही बढ़ियाँ फोटो है।

साइकल्स आ रही है और यहाँ पे साइकिल से लोग जा रहे है और यहाँ पे पेड़ ओड़ है जिससे छाव बना रहता है।

जो कि बेसिकली अम अ है जो कि सिर और बार में --

चर्च और चअ चर्च के पास अपनी प्रे करने के लिए और इस --

ये फोटो पार्क का है जहां पे बच्चे स्लाइडर पे झूल रहे हैं।

यहाँ रॉयल फिटनेस में जिम है बेसिकली एक टाइप का जहां पे --

पानी बह रहा है। उसके बगल में पेड़ पौधे हैं।